फ़ोन रखे गए हैं। फ़ोन के ऊपर कुछ स्पीकर भी पड़े हैं छोटे छोटे से स्पीकर पड़े हैं।

एक खाली किश्ती खड़ी है किस्ती जों की एक नदी के किनारे हो खड़ी हुई है।

वो सामने ही एक सूरज ढर रहा है जहां पर--

दो लोग और सूरज को बहुत ही अच्छे से--

और साथ में ही फिल्टर भी पड़े हुए हैं और पीछे--

और उसी के साथ एक भाई अंदर जा रहा है सामने एक बाल्टी पड़ी है जोकि बहोत अच्छी लग रही है उसके साथ ही कुछ बाइक यहां पर खड़ी की गई है।

उसके साथ एक कुंए के साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ब्रेक बेकरी का बोर्ड बाहर लगा हुआ है और उसी के साथ बैकरी के अंदर बहोत सारा सामान पड़ा है और उसी के साथ बाहर एक मोटरसाइकिल भी खड़ा है।

एक जोकि यहाँ पर बैठेने के लिए बेंच लगाया गया है।

और साथ में सामने कुछ लाइटे भी जल रही है। बड़े बड़े खबो पर लाइटे लगी हुई है।

यहां पर बहोत सारा किराने का सामान पड़ा है थैला पड़े हैं जिसमें की रखे हुए हैं।

यहां पर बहोत रंग बिरंगी मछली पड़ी हैं कुछ छोटी मछली हैं कोई बड़ी मछली हैं।

पार्क के सामने कुछ पेड़ भी हैं उसके पीछे एक च चट्टे कलर के परदे लगे हुए हैं उसी के साथ कुछ लोग यहां पर हैं कुछ दिखाई दे रहे हैं।